दिखाई दे रहा है जो कि है ।

अम ये जिम सेंटर है और जिम से जुड़े देखिए कोई स्कोप वाइज है और उधर देखिए --

देखिये ये पार्क दिखाई दे रहे है बहुत बड़ा पार्क है और देखिए --